और अपने-अपने मन्नत मांगते है।

उम घुमने के लिए --

यह एक बहुत बड़ा समुद्र है।

यह एक बहुत बड़ा समुद्र है।

बहुत बड़ा-बड़ा तूफ़ान आता है।

यह एक पॉवर प्लांट है।

यह एक कमरा है बहुत ही अच्छा कमरा है ।